एक व्यक्ति बहोत ही स्टाइलिश से अपना पोज देकर अ हम्म बैठा हुआ है।

यहाँ पर सब देवी लोग है सब लोगों ने अपनी अपनी स्वेटर पहनी हुई है और-अ अ कोला भी लगाए हुए है हाथों मे--

हमे यहाँ पर एक मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है और उसके नीचे जंगले भी खिड़कियां भी दिखाई दे रहीं हैं और जीपे भी रखी हुईं हैं कुछ जीपे पुलिस की भी रखी हुई हैं।

लगता है हमे एक व्यक्ती वहा खडा है और यह व्यक्ति अपने लिए दोनो गाड़ी ले आया हो उसी मै पार्टी मना रहा हो।